यहाँ पर एक शॉप है शॉप में बहोत से डमी खड़े हुए हैं जिन्हें कपड़े पहनाया गया है।

कलर के पोस्टर भी लगे हैं और बहोत से कस्टमर अंदर शॉप में हैं जहाँ पर कपड़े भी टंगे हुए हैं और लोग दिखा रहे हैं।

साइड में एक और बिल्डिंग है जहाँ पर रेड और ब्लू पोस्टर लगा है यह कोई शॉप का पोस्टर है।

और सामने की तरफ एक सफेद कलर की बड़ी बिल्डिंग है बीच में कुछ डिजाइंस भी बनी हुई है रेड कलर का बैनर पोस्टर भी है।

बहोत से वाइट ब्लैक ऑरेंज कलर के बॉक्स रखे हुए हैं अलमारी में सामने की तरफ कुछ हरे--

और बहोत सा ग्राउंड यहाँ खाली है जहाँ बहोत से लोग घूम रहे--

गोल डिजाइन बनी है ब्राउन और ब्लैक कलर की जिस पर वाइट और ब्लैक कलर की--

लगे हुए हैं जिन्हें डिजाइन में कटिंग की गई है आसपास बड़े पेड़ भी हैं और बाउंड्री के बाहर साइड बाहोत से घर बने हैं बड़ी बिल्डिंगें भी--

ऊपर भगवान की तस्वीर और मूर्ति रखी है नीचे यल्लो कलर का टेबल है।

यहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है जो पूरी ही वाइट कलर की है जिसमें नीचे की तरफ ब्राउन और--

कुछ वाइट कलर की बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई है।

यहाँ पर बहोत से लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथ में कुछ म्यूजिक सिस्टम --

बीच में कुछ जगह खाली है दूसरी तरफ एक ग्रीन और वाइट बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

जहाँ पर ब्लू और रेड कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए क्लासरूम में बहोत से टेबल और चेयर लगे हुए हैं जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं बहोत भीड़ है सामने--

और ऑरेंज कलर का है इसमें बहोत सारे रेड कलर के पोस्टर लगे हुए--

और कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने काफी ज्यादा जगह खाली--

हुए हैं सामने की तरफ कुछ वाइट पोस्टर लगे।

और बहुत सी बाइक यहाँ खड़ी है कुछ लोग निकल कर सामने की तरफ जारे--

बाइक लगी हुई है बीच में एक बड़ा पेड़ है।

पंखा लगा है बहोत से बेंच टेबल्स लगे हैं जो लाइट --

यहाँ पर एक स्कूल है और स्कूल में बहोत से बेंच टेबल रखे हुए हैं।

पोस्टर लगा हुआ है आगे की तरफ कुछ ग्राउंड खाली है जहाँ से कुछ लोग--

अ जिन्होंने रेड कलर की कैप पहनी हुई है एक गोल्डन कलर का स्टार लगा हुआ है और यहाँ बहोत से ग्रीन --

दीवारों के साइड में जहाँ पर यल्लो लाइट लगी है और जो ब्रेंच और टेबल्स हैं व--

ब्राउन और रेड कलर का बना है सामने से रोड़--